बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए --

कुछ अ गाड़ियां बाइक एंड कार अ हैं।

ये एक स्कूल है जिसका नाम सरस्वती विद्या मंदिर है।

और यहाँ पर एक अ घर भी है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है।

मंदिर में जो है मंदिर के एंट्री पे --

और अंदर बहोत सारे लोग भी जा रहे हैं।